यहाँ भी एक पार्क है। जहां पर बीच में एक स्टैचू लगा हुआ है। महान --

यह एक स्विमिंग पूल है। जहाँ पर स्विमिंग कॉम्पिटिशन अगर स्विमिंग सीखने आते हैं। लड़के लड़कियां इधर पर स्विमिंग करते हैं जो ट्रेनिंग ट्रेनर होते हैं वो --

यह ये मार्केट है घंटाघर की जहाँ पर सब्जी फल की दुकान लगी है जहाँ पर सेब रखे है जहाँ पर सेब कम दामो में बेचे जा रहे हैं और इधर लाइट भी लगी है तिरंगा कलर तिरंगे जैसी --